और पूरे रूम मे मूर्तिया है एक आदमी खड़ा है सामने और साइड मे भी मूर--

यह एक छत है जिसपे कपड़े सुख रहें हैं साइड में एक पेड़ लगा हुआ है और पिल्लर्स लगे हुए हैं एक छोटा सा रूम बना हुआ है सामने उसके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

एक लड़का वहाँ पर फोन पर बातें कर रहा है खड़े होकर और साइडों में गाड़ियााँ खड़ी हुई हैं कार खड़ी है एक।

वगैरा प्लेट डिनर सेट ये एक ग्रॉसरी की शॉप है।